कुछ लोगों ने अपने मुंह पर मास्क भी लगा रखा है।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

मंदिर के ऊपर टॉप पे दो चोंगे नजर आ रहे हैं।

आस पास कई सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक सफेद रंग का बड़ा सा हवाई जहाज नजर आ रहा है।

अंदर एक काले रंग की कुर्सी दिखाई दे रही है जो स्टील की है।

आसपास की दीवार भी सफेद रंग की है।